ये एक मंदिर दिख रहा है जो की पूरा रेड कलर का है।

लाइट के वायर दिख रे हैं।

एक ब्लैक कलर का बैग रखा है चमच रखा है।

यहां बोहत सारी बिल्डिंगे दिख रही है।

टेंट लगे हुए है बहुत सारे लोग दिख रहे है बहुत सारी कुर्सियां भी दिख रही है जिसपे व्हाइट कलर का चदर डला हुआ है।

ये एक स्टेशनरी दिख रही है जिसमें लकड़ी की आलमारी दिख रही है वाइट कलर की।

ट्रे रखी हुई दिख रही है।

एक काउंटर बना हुआ दिख रहा है ब्राउन कलर का बहोत सारी लाइट जल रही हैं एक स्टार बना हुआ है ऊपर चद्दर लगी हुई है।

ओ बहोत सारी कुर्सी लगी है उनका कलर भी ब्राउन है।

उस पे बहुत सारे पैन रखे हैं कुछ लाइट कलर के कुछ बॉक्स हैं कुछ ब्लैक के एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है।

ये एक दुकान दिख रही है उस में बहुत सारे बैट रखे हुए हैं शू वो जूत्ते रखे हुए है एक कुर्सी लगी है उसके ऊपर --

ये एक हॉल दिख रहा है जिसमे बोहत सारे लेडीज और गेट्स योगा कर रहे हैं।

टेंट लगा है बहुत सारी लाइट जल रही है कुर्सियाँ रखी हैं बहुत सारी उनपे वाइट कलर का पर्दा डला है एक --

एक ब्लैक साइकिल है कुछ रेड साइकिल है बोहत सारे लड़के खड़े हैं एक बैनर लगा हुआ है ।

एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है जिसकी बहुत सारी खिड़कियाँ दिख रही हैं एक छोटी बिल्डिंग दिख रही है उसके --

पानी का कलर ब्लैक दिख रहा है।

लाइट के वायर दिख रहें हैं गेट दिख रहा है ऊपर तीन खिड़की दिख रही है साइड में लाइट के वायर दिख रहें हैं बादल दिख रहें हैं।

पहना और दोनों रेड कलर की टी-शर्ट पहनी है लोहे के शरीर दिख रहे है बोहत सारे।